बहुत बड़ा नदी है नदी में मछली है चिड़िया है शेर का प्रतिमा है एक मिट्टी का टीला है घर है ।

हीटर रैक अम की टीचर कैबिनेट --

जन जोती श्लोक श्लोक --